ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में पहाड़ है ब गुफा है जो गुफा के अंदर एक लड़का घुस के इसमें सेल्फी लिया फोटो लिया है।

डाइनिंग टेबल है जो कि बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है बहुत ज्यादा लग रहा है कि फैमिली बड़ा है यहां का।

पुराना पहाड़ पहाड़ है जो कि यहाँ पर बहुत बडा अथि है और यहाँ पर अम बड़ा-बड़ा अथि भी है ।

खूबसूरत भी लग रहा है देखने में।